घर के आगे भी चाय की घास देख रहे हैं।

इस तस्वीर पर घर नजर आ रहे हैं।

घर को बैलून से सजाया हुआ है।

ब्लैक लगाए हुए हैं।

सरक को प्रोटक्शन वॉल लगाए हुए है।

वरांडा को सीमेंट से लिपाई किया गया है।

दीवार के अंदर चार्च नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर पर पेंदल नजर आ रहा है।

कैंडल को फूलों से सजाया गया है।